यहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके ऊपर पीला कलर किया हुआ है और कांच की कुछ अलमारियां बनी हुई हैं।

इसके अंदर कुछ व्हाइट व्हाइट दूध वगैरा है और आस पास में बहुत हरी भरी पत्तियां भी दिखाई दे रही है।

और एक पेट्रोल वाला भर रहा है बाइक के अंदर पेट्रोल और बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

और आसपास बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनकी पत्तियां भी दिखाई दे रही है।

और बहोत ही हरियाली छाई हुई है और ये बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर लगे हुए हैं।

जोकि जल रही हैं और आसपास कुछ गुलदस्ते भी रखे हुए हैं और दीवार पर कुछ बोर्ड लगे हुए है।

जो कि हरे भरे हैं और पेड़ की पत्तियां भी दिखाई दे रही है और कुछ आस पास में घर भी है।

नीचे लाइब्रेरी भी है अंडरग्राउंड और आगे बहुत सारे बाइक और स्कूटी खड़ी हैं और पास में एक कोचिंग क्लास भी है जोकि बहुत --

और नीचे कुछ डब्बो में केमिकल वगैरह और कुछ तेल वगैरह कोई ऑयल वगैरह हो गया रखा हुआ है।

और सामने एक पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसपे मानव धर्मेंद्र लिखा हुआ है बाहर एक पेड़ दिखाई दे रहा है जोकि हरा भरा है।

शॉप है जिसके अंदर कुछ ऑइल वगैरह और कुछ डब्बीयां वगैरह रखी हुई है इसके अंदर एक लाइट जल रही है यह फर्नीचर की शॉप है।

जिनके आगे कांच लगा हुआ है और दीवार पर कुछ लकड़ी के गुलदस्ते वगैरह टंगे हुए हैं लाइट जल रही है।

यहां पर एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

और पंखे और ए_सी लगी हुई है और ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है जो की बहुत बड़ी शॉप है।